आप यहां पर इस पिक्चर में--

देख सकते हैं कि यहां एक मोबाइल की शॉप दिखाई--

आप यहां इस पिक्चर --

बहुत बड़ा सा झूला लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में।

ये यहां पर एक बहुत बड़ा--